और ये डिंपल को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है गाड़ियों के साइड में रखने के लिए जगह है।

कि आप पूछिए मत यहां आके आप रहना चाहेंगे सोना चाहेंगे थोड़े टाइम वेस्ट करना चाहेंगे जिसमें--

चेयर है दो मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन हुआ है आप यहां पे आ सकते हो इंटरव्यू वगैरा दे--